इस तस्वीर में कुछ बैनर्स को दिखाया गया हैं।

सड़क के बीच बहुत सारे लोग मौजूद हैं।

तस्वीर में एक बस को भी दिखाया गया है।

तस्वीर में होटल के रिसेप्शन के पास एक आदमी खड़ा है।

तस्वीर में होटल के एंट्रेंस के बाहर रखे बहुत सारे पौधों को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक रेजिडेंशियल कॉम्लेक्स के एंट्रेंस को दिखाया गया है।

तस्वीर में भारत बेंज के डीलरशिप शोरूम को दिखाया गया है।

तस्वीर में शोरूम के आगे एक ग्रीन कलर की बस पार्क्ड है।

तस्वीर में शोरूम के आगे कुछ लोग खड़े हैं।

कंप्रेसर के पास एक वाटर जेट को दिखाया गया है ।

इस तस्वीर में एक बुक सेंटर को दिखाया गया है।

तस्वीर में दिखाए गए बिल्डिंग्स में बहुत सारे विंडोज और बालकनीज को देखा जा सकता है।

तस्वीर में दिखाए गए रेस्टोरेंट के अंदर एक स्विमिंग पूल को देखा जा सकता है।

तस्वीर में दिखाए गए कार के पास एक आदमी को देखा जा सकता है।

इस तस्वीर के बैकग्राउंड में कुछ पेड़ों को दिखाया गया है।

तस्वीर में बैकग्राउंड में एक बिजली के टावर को दिखाया गया है।

दुकानों के पास एक छोटा सा मंदिर है।

दुकानों के पीछे कुछ पेड़ है।

तस्वीर में इमारत के एंट्रेंस के पास कुछ सीढ़ियां है।

झरने से बहता हुआ पानी दूध की तरह सफेद रंग का है।

दुकान के अंदर एक आदमी मौजूद है ।

तस्वीर में सड़क के पास मौजूद किताबों की दुकानों को दिखाया गया है ।

इस तस्वीर में एक रूम के इंटीरियर को दिखाया गया है।

तट पर कुछ नाव मौजूद है।

इस तस्वीर में एक परेड इवेंट को दिखाया गया है।

तस्वीर में एक रूम के इंटीरियर को दिखाया गया है।

रूम में एक डबल साइज बेड एक टेबल और एक चेयर मौजूद है।

रूम में मरून कलर के कर्टेन्स लगाए गए हैं।

जिम के सीलिंग में एक फैन लगा हुआ है।

तस्वीर में दिखाए गए आश्रम के पास कुछ स्टेयर्स और रेलिंग्स को दिखाया गया है।

वॉल्स में लगे ग्लास सेल्फस् में बहुत सारे फ्लावर्स और गिफ्टिंग आइटम्स को रखा गया है।

गार्डन के पास एक सड़क को भी दिखाया गया है।

गार्डन के पास बहोत सारे पेड़ मौजूद है।

एक बिल्डिंग के ऊपर सफेद बैनर में आकाश इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक रूम के अंदर के भाग को दिखाया गया है।

रूम के सीलिंग से दो फैन को लटकाया गया है।